बिल्डिंग में मुझे देवासी अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट दिख रहा है।

तलाब के आइड साइड मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे हर तरह के चश्मे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बहोत सुंदर फ्लावर डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे सलून के प्रोडक्ट्स दिख रहें हैं।

इसमें मुझे शॉप के अंदर भी कुर्तियां कपड़े दिख रहे हैं।

इसमें मुझे रात का नजारा दिख रहा हैं।

शॉप में मुझे दो डे डोर दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बहोत सारी दवाइयां दिख रही हैं।

इसमें मुझे मेडिकल का एक रूम दिख रहा है।

मंदिर में मुझे दिया जलती और कुछ भक्त दिख रहे हैं।